दूर भी कुछ व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस रस्ते पर एक मोर है जो एक पैर पर खड़ा हुआ है।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

इस फोटो में दो गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां कुछ बिना टोकरी वाली और रेंजर साइकिल भी हैं।

जिसका पानी बहुत गंदा तथा बहुत कम है।

बराबर में भी मेज रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह फोटो किसी चर्च के बाहर से लिया गया है।

इस फोटो मे कच्चे मैदान पर सामने के साइड दो ड्रम रखे हुए हैं और दो व्य--

इस मील के बाहर एक ट्रोले में कुछ भरा हुआ खड़ा है तथा--

दीवार के बराबर में कांच की खिड़कियां लगी हुई दिखाई दे रही है।

तीन खानो में दिखाई दे रहें नीचे की साइड कुछ डब्बे और कुछ बोतले भी और रखी हुई हैं।

इस पर दो बोतल रखी हुई है साइड में भी तीन बोतल दिखाई दे रही है।

ऊपर ऊपरली साइड कुछ लाइट भी जलती दिखाई दे रही है।

छत पर बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।

जो अधिकतम जेंट्स ही दिखाई दे रहे हैं।

कुछ डब्बे भी है जो मेज पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक व्यक्ति कुर्ते पजामे में खड़ा हुआ है।

सागर में एक बच्चा भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

और ऊपर के साइड पहाड़ पर छोटा छोटा हरा हरा घास भी दिख रहा है।

यह फोटो किसी परचून की दुकान से लिया गया है।

इस पर बहुत सारे नमकीन तथा कुछ कुरकुरो के पैकेट भी टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें कुछ गाड़ियां तथा कुछ टेंपो भी चलते दिखाई दे रहे हैं।

और रेते बजर पुर का भी ढु लगा हुआ है।

इस फोटो को स्कूल से बाहर से लिया गया है।